इधर एक दुकानदार उधर एक बाईक खड़े हुए है बाइक का रेपाइरिंग कर रहा है दुकानदार बाइक का न बाइक का नंबर है ए पी ज़ीरो थ्री सी एच पंद्रह चौवालीस एक मर्द बैठा हुआ है

एक मर्द खड़े एयरटेल का पोस्टर लगा हुआ उधर पोल है दो-तीन पोल है शटर लगा हुआ है नीचे दुकान है।